वाव बहुत सारे अंगूर है यहाँ पर काले रंग के अंगूर है और और और क्या बोले और अ म --

हाँ एक लड़का खड़ा हुआ है और अपनी हेयर स्टाइल को दिखा रहा है और डिज़ाइन किया है हेयर स्टाइल अं शायद सैलून दुकान में है।

कुछ लड़के व्हाइट कलर में पड़े मतलब कपड़े पहने हुए हैं और कुछ आर्मी ड्रेस में दिखाई दे रही है और डांस कर रहे हैं शायद।

हम लोग एचडीएफसी बैंक आये है और सामने दिख रहा है। तीन लड़के सीढ़ी के ऊपर हैं।

दूर उस साइड में सीढ़ी हैं और नीचे बाइक हैं। निचे कुछ दुकान है। ऐसे दिखाई दे रही है।

हम लोग देख रहे हैं। एक गाड़ी के पीछे दिखाई दे रही है। व्हाइट कलर की गाड़ी और जो फूलों में सजावट हुई है और ऊपर में और कुछ प्लास्टिक वगेरा रिंग --

और एक ट्रक है | ट्रक के मतलब अंदर एक आदमी माथे पे बस्ता लेके रख रहा है और एक --

यह पूरी एक लड़की ये तो टीचर वो डांस कर रही है।